नीचे ब मशीन रखी है। नीचे फर्श दिखाई दे रहा है जहां पे चेयर रखी है जिसपे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है। नीचे कार्टन रखी है सामान रखा हुआ है।

और एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे रेक भी लगी हुई है छोटे-छोटे कार्टून रखे हुए है जिनपे अखबार लगा हुआ है अखबारों के ऊपर फ्रूट रखे है जिसमे ऑरेंज सेब --

और एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका शटर गिरा हुआ है। उसके आगे तो बास्केट रखी है जो कि नीले और लाल रंग की है। पीछे और भी बास्केट दिखाई दे रही है जो पैक रखी हुई है। एक वाटर कलर दिखाई दे रहा है।

इधर सफेद रंग का भी घर दिखाई दे रहा है जिसकी खिड़की दिखाई दे रही है और भी घर दिखाई दे रहे हैं जिन पर टंगे हुए हैं। सामने की तरफ एक पी पीले रंग का पेपर लगा हुआ है। जिसके नीचे एक दुकान लगी हुई है। पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा दिखाई दे रहा है। जिसपे पेन्ट पोस्टर लगे हुऐ है। एक आदमी खड़ा हुआ है। जिसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है। काले रंग की पेंट पहन रखी है।

यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जो कि नारंगी सफ़ेद और हरे रंग से रंगा हुआ है। ऊपर एक बोर्ड लग रहा है जो कि पीले रंग का उसपे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है दिवार दिखाई दे रही है दिवार पे पेंटिंग बनी हुई हैउसपे अक्षर क ख ग लिखे हुए हैं।

फ्रूइट्स रखे हुए है। केले बंच पीछे टंगे हुए है। सामने कॉटन बास्केट रखी है। बास्केट के ऊपर टोकरिया रखी हैं टोकरियों मे --

बहुत सारे फल रखे हुए है। आदमी एक लड़का बैठा हुआ है जिसके आगे बास्केट रखी हुई है जिसमे सेब रखे हुए है और नीचे की सड़क दिखाई दे रही है।

क्लासरूम दिखाई दे रहा है जिस पर पीले रंग की दीवार दिखाई दे रही है। नीचे स्लेटी रंग की आकृति बनी हुई है। एक लाईट दिखाई दे रही है जो कि जल रही है ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

इस फ्लोर पर एक ल आदमी खड़ा है। सीटें लगी हुई है। सीटों जो है लाल रंग की है। उनपे कुछ बच्चे बैठे हुयें हैं जो कि एक्साम दे रहे हैं। उनको एक पेपर शीट मिली हुई है जिस पर वो लिख रहे हैं और लाल रंग की शीट है।

यहाँ पर एक मेज दिखाई दे रही है। मेज पर कई सारी टोकरियाँ रखी है। टोकरियों में फ्रूट रखे हुए है केलों के बंच रस्सी पर टंगे हुए है। ऊपर एक तिरपाल दिखाई दे रही है जो कि --

ऊपर एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि पीले रंग का जिसपे कुछ आकृति बनी हुई है। पीछे एक घर दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की है जिससे जाते हुए तार दिखाई दे रहै है। सामने एक बोर्ड लग रहा है जो कि पीले रंग का है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। पीछे की तरफ एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

एक बैग रखा है। सामने की तरफ टीन शेड पे कुछ सामान लटका हुआ भी है। ग्लास डिस्पोज़ल दिखाई दे रहे है जो कि टीन शेड पे लटके हुए हैं।

यहाँ पर पेड़ की छाया पढ़ रही है। सामने की तरफ एक ऑरेंज कलर की बड़ी बहुत ब लंबी-सी पट्टी दिखाई दे रही है।